यह एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है विजय फ्लावर डेकोरेटर और प्रो विजय दास इसमें नंबर दिया गया है सेवन फा- सा- सात पांच चार सात जीरो सात दो दो तीन।

और पेड़ पौधा है रोड़ है और सामने में एक दीवार है।